पीछे साइड भी एक बस है लेफ्ट साइड में भी एक ज़ुका हुआ है बनी हुए है पीछे साइड पेड़ लगे हुए है।